यह एक पोखरा है यह पोखरा चारो ओर से घिरा हुआ है इस पोखरा के बगल में एक मंदिर है इस मंदिर मे बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आते हैं और इस पोखरे का पानी बहुत साफ़ है यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं ।